पे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और पीछे में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़--

ऊपर में बहुत अच्छे पर्दे लगाए गए है और पीछे में बहुत ही अच्छी -अच्छी चित्रकारी की गयी है जोकि बहुत ही अच्छी हैं।